घर है एंटेना है ऊपर में और नीचे खिड़की है इ फिर छपरा है ट्राली है ईटा है।

स्कूटर है ।

लड़की है तलवार है पंखा है ऐ.सी. है झंडा है घर है।

टेबुल के ऊपर एक ठो बक्सा है।

ओन्ली टेंकी है लोहा वाला गेट है लोहा वाला खिड़की है ।

आदमी है मूर्ति है।

जेंट्स है लेडीज है पानी का टैंकर है घर है।

खिड़की है गेट हैं माइक है मंदिर हैं।

गाड़ी है घर है।

कुर्सी है गुब्बारा है सितारा है लाइट्स हैं।